मूर्तियों की संख्या तीन है। तीन मे से एक मूर्ति सबसे बड़ी --

यहाँ पर एक रोड और सामने हरे भरे खेत खलियान दिख रहे --

ये एक अच्छा और सुंदर और ऊंचा और बड़ा और अच्छा ओ एक मैरिज हॉल है।

यह एक सुंदर और अच्छा एक हिरन है और हिरण के सामने जाली --